सामने खिड़की है दूसरी तरफ शिशा लगा हुआ है दीवार पर बहोत सारी--

यहां कुछ दुकानें हैं सामने चौक मॉडल टाउन लिखा हुआ है।

यहां एक पेट्रोल पंप है जहां पर स्कूटी और मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं।

और हाथ में पेपर पकड़े हुए हैं।

ऑफलाइन ऑनलाइन पठानकोट लिखा हुआ है।

बोर्ड पर एस_बी_आई लिखा हुआ है।

कटिंग का उसने कुछ अलग तरह का डिज़ाइन बनवाया हुआ है।

और बहुत सारा सामान भी यहां रखा हुआ है पीछे गीजर भी लगा है।

सामने बहोत बड़ी शेड बनी हुई है यहां तीन कुर्सियां रखी हुई हैं दूसरी तरफ ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है।

और बाबा दीप सिंग़ जी भी लिखा हुआ है।

दूसरी तरफ सोफा और टेबल लगे हुए हैं।

ये एक पैलेस है पैलेस के दोनों तरफ कुर्सियां मेज लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है यहां पर गत्ते के डिब्बों में कुछ सामान पड़ा है उनके बाहर भी लिफाफा--

और यहां बहोत सारी तारे दिख रही है।

यहां एक कार भी खड़ी है।

दूसरी तरफ कुछ खाली जगह है।

ये एक दुकान है सामने रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी लिखा हुआ है।

यहां एक जिम है जिम के अंदर दो लड़के खड़े हैं।